यह एक बहोत ही सुंदर और आकर्षिक नदी दिखाय दे रहा है जो कि देखने से प्रतीत हो रहा है की ऐ बहोत ही गहरी नदी है और इसके किनारे में बहोत सारे पेड़-पोधे झाड है। ऐसा प्रतीत होता है की यह नदी किसी जंगल की बीचो बीच से होके गुजर रहा है।

वीर में सोनी कंपनी का --

बड़ा सा पोस्टर भी लगा हुआ है और कुछ बलुन्स भी दिखाई दे रहे हैं।

यह तस्वीर देख कर के लग रहा है कि यह एक योगा क्लास है।

इसमें बहोत शांति का माहौल दिखाई प्रतीत हो --

यह मोटरसाइकिल की सर्विसिंग सेंटर दिखाई दे रही है। यह एक शॉप है जिसमें बोहोत सारे मोटरसाइकिल के पार्ट्स रखे गए। इसमें कुछ इंजन में डालने वाले तेल भी रखे हैं। इस शॉप के आगे एक पुरानी बाईक खड़ी है।